जिसमें बहोत सारे बच्चे हैं जिसमें बहोत सारे बच्चे हैं पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं एक मैडम है एक मैडम है।

पीछे बिल्डिंग पीछे बिल्डिंग है रोड है सामने रोड है।